पिक्चर में बहुत सारी मूर्तियां है।

पल्स देखने वाला है चेक करने वाला है माउस है प्रिंटर है।

यहां पर पेशेंट को लेटने वाला भी बेड है।

इसमें एक पंखे भी दिख रहा है।

एक दो लाइट भी है इसमें बहुत सारे में कपड़े भी रखे हुए है।

यहां पर तीन चार चेयर्स भी लगी हुई हैं एक सोफे वाला भी चेयर लगा हुआ है उसके जस्ट बगल में एक टेबल है।

इस इमेज में एक हाईवे रोड दिखाई दे रहा है।

ए एक हॉल का दृश्य है जिसमें दो व्यक्ति लोहे की चेयर पे बैठे हुए है एक व्यक्ति फोन चला रहा है।

झोपड़ी है जो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है।

यह एक बगीचे का इमेज है इस में बहुत सारे पेड़ हैं।

इस इमेज में पेंट्स का दुकान दिखाई दे रहा है।

एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है उसके बगल में एक घर भी है।

रोड पर एक बस खड़ी है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एक इंसान में बस पर चढ़ रहा है।

यहां पर ट्रांसफार्मर भी दिखाई दे रहा है।

दो लोग जा रहे हैं।

यहां पे एक छोटा सा व्हाइट कलर का बोर्ड भी लगा हुआ--

इस इमेज में कामधेनु एन_एक्स_टी करके एक पोस्टर लगा हुआ है।